होली का नजारा है कई लोग आपस में गले मिल रहे हैं रंग उनके कपड़े पर बिखरे हुए हैं और पीछे एक झोपड़ी है।

शाम का समय है और इस पूजन स्थल पे ईख भी टंगा हुआ है और बहुत ही रमणिक स्थल है कई रंग-बिरंगे कपड़े --

ये एक पार्क है यहाँ झुलवा लगा हुआ है कई सारे लोग झुलवा झूल रहे है एक साथ काफी अ सुंदर नजारा है।